यह गार्डन का दृश्य है जिसमे हरी-हरी घास चारो तरफ फैली हुई है क्यरियाँ दिखाई दे रही है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है चारो तरफ हरे-भरे पेड़ो पर हरी-हरी पत्तियाँ--

यह एक नदी का दृश्य है जिसमे पानी दिखाई दे रहा है जिसके चारो तरफ किनारे दिखाई दे रहे है किनारो पर मिट्टी फैली हुई है हरी हरी घास उगी हुई है | छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है ।

हैंडिल दिखाई दे रही है जो की काले रंग की है दिवार है जो की सफ़ेद रंग की है वहाँ खिड़की लगी है खिड़की पर जाल लगी हुई है लाइट लगी हुई है।

टैक्टर खड़ा हुआ है जो की नीले रंग का है नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है जो ईटो का बना हुआ है ।

यहाँ पर एक दिवार है जो कि गुलाबी रंग की है उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि काले रंग का है उस पर सफ़ेद रंग से कुछ लिखा हुआ है आकृति बनी हुई है नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ --

लिखा हुआ है टाइल्स लगी हुई है सड़क के बीच में डिवाइडर है जहां हरी-हरी पौधे लगे --